इस पिक्चर में मुझे पार्किंग एरिया नजर आ रहा है।

और उस गाड़ियों के ऊपर एक सेट लगा हुआ दिख रही है।

इस पिक्चर में मुझे सामने की तरफ रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है।

सामने ही मुझे एक इंजीनियर खड़ा हुआ नजर आ रहा हैं।

आ रही है सीढ़ियों के ऊपर मुझे छांव के लिए एक सेट लगा हुआ नजर आ रहा हैं।

काफी श्रद्धालु गण भक्त मुझे सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में मुझे यह एक शॉपिंग मॉल बना हुआ दिख रहा--

इस इमेज में मुझे एक कैफे दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे सामने एक व्हाईट बॉल दिखाई दे रही है।

और मुझे कुछ बैग बॉक्स और कार्टून रखे दिखाई--

बोर्ड पर कुछ लिखा दिखाई दे रहा है सामने ही रेलवे स्टेशन --

सामने ही छोटे मैट्ट्रेस रखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

इस इमेज में हमें एक शूज दुकान दिखाई दे रही है सामने एक शूज रैक --